यह एक बस स्टैंड का फोटो है इस बस स्टैंड में बहुत सारी बसें रखी खड़ी हुई हैजहां पर कुछ वि.आई.पि.बसें चार्टेड अकाउंटेंट चार्टेड वाली बसें भी है |

सामने एक दीवार है जो की छोटी है उस दीवार आगे एक कुर्सी रखी हुई हैबड़ी खाली हे उसके पास एक खजूर का पेड़ है।

साफ नहीं है बादल ही बादल है मौसम में और यहाँ पर कुछ पेड़ भी लगे हुए है और यहाँ पर है|

बिल्डिंग भी लाल कलर की है और है आसमान में भि हल्के फुल्के बादल छाए हुए है।

यहा एक कोचिंग क्लाससेस का ये बिल्डिंग है यहा पर कोचिंग क्लासेस चालुका बोर्ड लगा हुआ है उसके सामने--

एक बाइक रखी हुई हे कुछ बाइक रखी हुई हे इस बिल्डिंग का इस कमरे के सामने एक लोहे का गेट हे साथ ही यहा पर खिड़की भी लगी हुई हे। साथ ही यहा पर कुछ बच्चों के फोटो भी लगे हुवे हे।

इसके साथ साइड में एक जो दिवार है जिसपे कुछ बोर्ड लगा हुआ है साथ ही यहां पर इसका कलर वाइट और ब्राउन है इसके सामने गेट कांच का गेट लगा हुआ है वो अभी खाली है।

यहाँ एक दुकान है दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है और दुकान में बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है साथ ही यहाँ पर एक लोग खड़ा हुआ है इस दुकान के ऊपर एक घर बना हुआ है साथ में पास में भि एक घर है ।

यहाँ पर एक इमारत है उसके वहां पर एक शॉप खुली हुई है जिसके सामने एक बाइ राखी हुई बाइक के ऊपर एक हेलमेट रखा हुआ है सात में एक और उसके पास बाइक है जिसका शटर अभी बंद है।

साथ ही यहा पर कुछ नावे भी है और इसके आसपास बस्ती है लोगो की यहा पर हाट बना हुआ है।